बड़ा सुन्दर मकान इस पर कोई लेटो हुआ है का ऊपर और दोनों ओर पेड़ खड़े हैं मकान भी है।

अरे जों तो बड़ीन बड़े बड़े अच्छे जूता को शोरूम --

जे बालक आदमी कछु लै जात हैं। पेड़ों हैं --

और ब कोई राक्छ्सो हैगो जे सब लोग मूरतिन लगीन हेंगी । जे लोग और दर्सन को जात हैंगे। हैय कोई औरत खड़ी हैं एक थाली में कछु लय ।